एक घड़ी दिखाई दे रही है।

फैन दिखाई दे रहा है जो ब्लैक कलर का उसके पास एक टीयूब लाईट लगा हुआ नजर आ रहा है।

यहां पे एक टेबल भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर नीचे का फर्श भी दिखाई दे रहा है।

सामने में ढेर सारा लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

घर के ऊपर में ड्रम भी दिखाई दे रहे हैं।

मैक्स इंडिया पी_पी_टी लिमिटेड लिखा हुआ दिखायी दे रहा है।

कुछ बड़े बड़े पिलर्स नही लगाए गए हैं।

इस तस्वीर में तीन ऐ_सी दिखाई दे रहे हैं जो लगे हुए हैं।

लोहे की कुछ चीज से लगाया गया है।

इस तस्वीर में ढेर सारी कुर्सियां कुर्सियां दिखाई दे रही हैं जो बड़ी बड़ी कुर्सियां है।

सामने में अलग अलग रैक भी बनाए गए हैं।

बोर्ड स्विच बोर्ड भी दिखाई दे रहे हैं।

दुकान में ढेर सारे सामाने रखी गई हैं।

बड़े बड़े डब्बे दिखाई दे रहे हैं।

जो पौधे के अंदर लगाए हुए हैं।

खेत का नीचे के हिस्सा थोड़ा थोड़ा व्हाइट दिख रहा है।

यहां पे कुछ लोग फोन चलाते हुए और यहां पे प्लास्टिक और कुछ केले दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में ढेर सारे लोग दिखाई दे रहे हैं जो पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं।

यह रूम व्हाइट कलर का है।

पानी से थोड़ी गंदी पानी से भरी हुई है।

पास में कुछ पेड़ भी बने हुए हैं।

पे सीढ़ी भी बनाया गया है।

आस-पास ढेर सारे छड़ लगाएं गए हैं जो नीचे में दिखाई दे रहे हैं।

इसके ऊपर में पहाड़ दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में दिखाई दे रहा हैं।

बाहर में एक क्यू_आर कोड साटा हुआ है।

और सामने में कुछ घर भी दिखाई दे रहे हैं जो ऐ सी से लगे हुए हैं।

ढेर सारे लोग की फोटो चिपकाई गई है।

उनके ऊपर भी एक लाइट लगाया गया है जो गोले में है।

यहां पे नीचे का फर्श ग्रीन कलर का है।

एक रोड का दृश्य दिखाई दे रहा है।

में पोल दिखाई दे रहा है।

ढेर सारे पेड़ लगाए हुए हैं।

या पे ढेर सारे लोग रोड पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं।

पर एक करकट भी दिखाई दे रहा है।

जिसमें ढेर सारी खिड़कियां बने हुए है।

हर लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

छत के ऊपर में एक लाइट लगाया गया है।

जाली की बाउंड्री बनाई हुई है।